बहुत सारे कोयले हैं जो बोरी में किया हुआ है बोरी व्हाइट कलर का है।

बेन्च पर कई सारे कॉपी किताब रखा हुआ है।

बगल में एक घड़ा रखा हुआ है।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

और मोर पंख लगाया हुआ है पीछे।

बगल में डब्बा रखा हुआ है उस पर दो बॉटल रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ महिला है कुछ पुरुष है कुछ बच्चे लोग हैं।

कुछ बालूए है बगल में घर है बनाया हुआ अगल बगल बिल्डिंग्स भी है।

ऊपर खपडा सा छाया हुआ है गेट लगाया हुआ है।

बगल में एक टेंपो जा रही है और नीचे में फर्श बनाया हुआ है व्हाइट और रेड कलर --

बगल में एक खिड़की बीच में कुछ मशीनें रखी हुई है।

यहां पर दुकान का दृश्य दिख रहा हैं।

सोफा बनाया हुआ है कुछ सोफे में पेंट किया हुआ है कुछ में पेंट नहीं किया हुआ है।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

हॉल में डाइनिंग टेबल है बड़ा सा जो पेंट किया हुआ है हल्का ब्लैक कलर से और पीले कलर से।

यहां पर एक पेंटर दुकान का दृश्य देख रहा है।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

एक बाल्टी रखा हुआ है बाल्टी ब्लू कलर का है।

यहां प दुकान का दृश्य दिख रहा है।

बहुत सारे तारे लगाई हुई है तार ब्लैक कलर का है।

यहां पर बड़ा सा फील्ड का दृश्य दिख रहा है।

फूल ऑरेंज कलर का है बीच में एक चेयर है चेयर पे एक तौलिया रखा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा शटर लगाया हुआ है शटर ग्रीन कलर का है।

बैलून का कलर ग्रीन है येलो है पिंक कलर का है।

यहां पर क्लीनिक का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर बड़ा सा नदी का दृश्य दिख रहा है।

पांच रंग बिरंगे हैं कुछ काला है रेड है ब्लू है येलो कलर का है।

यहां पर सोनार दुकान का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर एक स्कॉर्पियो का दृश्य देख रहा है जो वाइट कलर का है।

फूल का कलर व्हाइट है और पत्ता का कलर ग्रीन है।

मैट रेड कलर का है और ब्लू कलर का--

बगल में कुछ टीचर्स खड़े हैं एक बीच में एक और टीचर है अगल बगल बहोत सारे बिल्डिंग्स हैं।

यहां पर एक कल का दृश्य देख रहा--

बगल में कुछ पुअरा रखा हुआ है अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।